पंखे की रड बहुत लम्बी-लम्बी है।

इनकी स्माइल काफी अच्छी है इन सबकी।

और काफी सी महिलाये पीछे लाइन में लगी हुई हैं कुछ पुरुष भी दिख रहे हैं ।